सनसेट का ये ये व्यू काफ़ी पीसफुल है और इसे देख कर एक अलग सी हैप्पीनेस फील होती है और मन करता है कि बस इस व्यू को देखते ही रहें।

सूख पड़ने पर इस पानी से फसल की सिंचाई की जाती है जिससे आस फसल को सूखने से रोका जाता है और फसल को हरा भरा रख सकते हैं।

यहाँ पोस्टर में सजाया गया है।

ये बौद्ध धर्म की आस्था का प्रतीक है जिसमें महात्मा बुद्ध और उनके साथ उनके दो अनुयायी --

मछिवीरें यहाँ पर मछियों से काँटे हटा कर उसे --

इस लड़के ने अपने बाल इस तरीक़े से काटे हैं।

का आखिरी छोर है और वहाँ पर आसमान खद्म हो जाएगा।

यह कोई पर्यटक स्थल लग रहा है जहाँ पर की बहुत सारे लोग इस --

अपने फूलों और अपने घर की सुंदरता को बढ़ा रहा है बल्कि --

इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स के बीच में --

उम का प्रतीक है कि जिस किसान ने भी ये फसल बोई है उसने इसपे --

आज भी विश्वास है कि भगवान उनके सुख दुख में उनके हमेशा साथ है।

इस दुकान में लगता है कि इंडिया के सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे और --

हरे-बड़े पेड़ की छाव में --

पहाड़ों पे लहराते हरे हरे पेड़ बहती हुई नदी --